है नदी के आस पास का व्यू बहोत--

है और यहां लोग फोटो भी--

इस इमेज में मुझे गणेश जी--

जिसका नाम बॉम्बे चौपाटी आइसक्रीम है यह बहुत बड़ी --

मुझे बहोत सारे स्टील के गिलास दिख--

बहोत ज्यादा बड़ी स्वीट्स की दुकान दि--

मुझे बहोत सारी लेडिसे पूजा करती हुई दिख--

थे जिसमें बच्चे अपने प्रोजेक्ट का--

है जिसका नाम ऋषि का ढाबा है और यह --

इसमें बहोत सारे बेड दिख--

और यह न्यूली ओपन हुआ दिख रहा--

है और यह बहोत ज्यादा बड़ी लग--

और यह महल काफी ज्यादा सुंदर लग--

बहोत बड़ा नदी के ऊपर ब्रिज दिख--

मुझे कई सारे सोनल पैनल दिख--

थे यह बहोत ज्यादा सुंदर--

छोटी सी चाय की टपरी दि--

और यह देखने में बहोत--

एक ईस्कैनर भी लगा हुआ दि--

जो देखने में बहोत ज्यादा अच्छी लग--